लेकिन यह रेस्टोरेंट फूलों द्वारा सजाया गया है जो काफी सुंदर लग रहा है।

नदी के आसपास काफी हरे भरे पेड़ पौधे भी है।

मिस्त्री दीवाल को बना रहा है जो काफी व्यवस्थित रूप से बना रहा है।

तीन वर्कर काम कर रहे हैं जिसमें दो तीन कामड़े--

तथा इस यह कोई मुझे टूरिस्ट प्लेस लगता है।

यह फोटो मुझे व्हीकल रिपेयरिंग सेंटर का लग रहा है जिसमें--

ऑफिस काफी साफ सुथरा लग रहा है।

एक मैडम है जो टहल रही हैं मुझे लगता है यह इन सभी वर्कर्स की सीनियर्स हैं।

तथा इस शॉप में शूज के डब्बे काफी रखे हुए हैं।

काफी हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

यह फोटो किसी कंपनी के बाहर का है।

तथा जिसमें दो चेयर्स भी डली हुई है जिनका कलर ब्लैक कलर्स का है।